बॉल्स रखी हुई हैं और ऊपर साइड में कुछ बैग्स भी रखे हुए हैं अलग कलर के--

जिसमे कुछ मंदिर टाइप की स्टेचुस बने हुए हैं और इसके पीछे कोई एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है एंड इसके आगे कुछ समुद्र जैसा भी दिखाई दे रहा है।

इसमें बहोत सारे व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है जिन्होंने ने अलग अलग कलर के कपड़े पहने हुए है।

पीछे अं ब्ल्यू कलर में कोई टीन वगैरह भी डाल रखी है।

पर्यटन स्थल का इन्होंने फोटो दिखा रखा है जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है--

ब्लू कलर की टीम से और नीचे बहुत सारे गैस सिलेंडर्स भी रखे हुए हैं।

और इसके पीछे कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

ये किसी शॉप वगैरा की फ़ोटो दिखा रखी है।

जिसके ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है और उसका नाम है बाल विद्या मंदिर हाई स्कूल इसके नीचे--

अं गद्दे दिखा रखी है जिसके ऊपर स्लिप डेकोर नाम का बो अं पोस्टर लगा हुआ है और पीछे बहोत सारी मिक्सी भी दिखाई दे रही है कुछ--

जिनके के ऊपर पेस्ट्रीज भी रखी हुई है।

उनके साइड में अलग अलग चॉकलेट्स रखी हुई है।

ये किसी गार्डन की फोटो इन्होंने दिखा रखी है ये कोई प्लेन गेम्स गार्डन है।

ये कोई स्कूल जैसी कुछ फोटो है।

अम जिसके अंदर बहोत सारी खिड़की और दरवाजें दिखाई दे रहें हैं और यह बहोत सारी चेयर भीं रखीं हुई हैं।

जिसके ऊपर रेड कलर में कुछ लिखा हुआ है और इन दीवार के नीचे ग्रि चॉकलेटी कलर और व्हाइट कलर की पट्टियां भी है।

और एक लड़की भी खड़ी है स्टेज पे और साथ ही गणेश भगवान की फो मूर्ति भी है और नीचे भी बहोत सारी लोग खड़े हुए है जिन --

और सामने कोई एक लड़की भी दिखाई दे रही है।

और इस मोर की दोनों साइड ऊं दीवा अ सड़क के दोनों साइड --

ये कोई टी_वी के शोरूम की फोटो है।

और इसके ऊपर ये एल_जी का --